तस्वीर में हमें एक मेडिकल शॉप दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे लेडीज खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक वृक्ष दिखाई दे रहा है जोकि एक गार्डन का वृक्ष है जीसके आस पास एक गार्डन भी नज़र आ रहा है।

यह बहोत ही सुंदर और अद्भुत भवन है।

हमें इसके आस पास कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें इस के घर के छत के ऊपर एक तिरंगा लटका हुआ दिखाई--

इस तस्वीर में मुझे एक इंडियन पोस्ट का ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसके साथ में एक--

इस तस्वीर में हमें एक कार शोरूम दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही बढ़िया और शानदार है यह एक बी_एम_डब्ल्यू का शोरूम --

यह एक चंडीगढ़ का बहोत ही अच्छा स्कूल है।

इस तस्वीर में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि मदर एंड चाइल्ड के बिल्डिंग है।

दूसरी बहोत ही अच्छी डेकोरेशन की गई है जोकि बहोत ही अच्छी दिखाई दे रही है।

पेड़ हैं बहोत ही विशाल है जिसके नीचे--

ऐसे लग रहा है कि ये जंगल बहोत ही घना और बहोत ही विशाल है।

का स्टोर है। जहां पर छोटे से लेकर बड़ों तक के साइकिलें और स्कूटर है जो कि बहोत ही सुंदर सुंदर और आकर्षक हैं।